इसमें भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

और साइड में एक आदमी है जो बैठके कुछ कर रहा है।

जैसे कि मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं यह देखने में एक बड़ा सा रूम है।

और उसके ठीक ऊपर भी लिखा है वहां पे वेटिंग एरिया --

जहां पे बहुत सारे आदमीया बैठे हुए हैं।

जिसमें टेबल और साइड में तीन चेयर पड़े हैं।

ये कलर है ग्रीन ।